इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक गाड़ी है इधर और दो व्यक्ति --

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह एक क्लास रूम है और बहुत सारे कुर्सियों को जोड़े गए हैं।

और हम उ ऊपर की तरफ जो है आसमान को देख सकते हैं जिसका रंग आसमानी रंग का है।

मेटस को देख सकते हैं हम।

आगे दो लोग खड़े हुए हैं और पीछे दो लोग खड़े हुए हैं |